बहुत लम्बा-लम्बा वृक्ष लगी रहलो देखी के पत्ता हरा सनी छै।

एकरा उपरो प गेटो गेट छे । गेटो में लिखलो छे कि प्रवेश निषेध आम रास्ता नहीं है।

इसमें कुछ खाने के लिए है रहे रखा हुआ और पियाज -निम्बू सब है इसमें।

इ कउनो क्लास रूम दिख रहा है इसमें बहुत सारा बच्चा है मास्टर भी येह पढ़ा रहा है मास्टर लाल रंग का टीशर्ट पहना है।

छे ठो हौरन लगा हुआ है बॉक्स है दो-तीन ठो ।

रोड के बगल में बिल्डिंग - उल्डिंग है पेड़-पौधा है।